इधर सभी चित्र बने हुए हैं जो कि ब ये एक हॉल टाइप से हैं यहाँ पे साइकिलें वगैरह मिलती है।

यह जंगल है जंगल में एक नदी निकली हुई है नदी में बारासिंघा बैठा हुआ है नदी के पास में--

पानी निकला हुआ है पानी है के पानी में सब सिंघाड़ा टाइप से पड़े हुए है पत्ते लगे हुए है पानी में पेड़ बहोत सारे लगे हैं।

यह पानी है पानी में मगरमच्छ है मगरमच्छ बहोत बड़ा है बहोत खतरनाक है पानी बहोत गंदा गंदा टाइप से लग रहा है मगरमच्छ पानी में ही रहते है।

यह एक हॉल टाइप से बना हुआ ऊपर से टीन टीन के नीचे सारे बच्चे गाड़ी में बैठे खेल रहे हैं गाड़ी जलाने वाली रिमोंट कार है।

यहां पे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं बहोत दूर दुर की बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं ये सामने से फ्लैट पड़ा हुआ है जोकि खाली है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत लम्बे लम्बे तार निकली है बहुत खम्बे है बहुत खम्बे है एक फोर व्हीलर खड़ी है दिखाई दे रही है सब कुछ घास पूस पत्ते दिखाई दे रही है।

गया है वो वाला गेट करा हुआ है गेट लगा हुआ है ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप से बना हुआ है जिस पे खाने पीने का सारा कुछ मिलता है रेड वर्ल्ड उसका नाम है।

कई लोग आते हैं यहाँ पे सब खाने के लिए और एन्जॉय करने के लिए टाइम सपेंड करने के लिए एक लोग खड़े हैं मेगे लाईटें बहुत अच्छी अच्छी नज़र आ रही है।

ये एक बुक की शॉप है जहाँ पर बहोत सारी बुक्स मिलती है यहाँ पर बुक लेने के लिए बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

और बुक के अंदर अ स शॉप के अंदर पे दो तीन लोग खड़े हुए है पूरी एक तरफ से--

ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा सा हॉल टाइप से बना हुआ है जिसमें ऊपर टीन पड़ी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ पे स्टेज बना हुआ है ये कुछ प्रोफार्मेंस वाला अस स्टेज है यहाँ पर कुछ डांस वगेरा या प्रोफार्मेंस होता है ऐसे--

हम्म ये एक शॉप है जो कि सीमेंट और बालू की शॉप है इसमें बाहर ढेर भी लगे हुए है बालू और सीमेंट के।

और बाइक खड़ी हुई है पास में और एक साइकिल भी खड़ी हुई है। अगल बगल सब बन्द दिखाई दे रहा है।

एक आस पास पेड़ लगे हुए हैं ये एक स्कूल हैं स्कूल काफी अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र हैं।

और ये इसमें डिब्बे रखे हुए है सेनेटाईजर रखा हुआ है एक मिक्स्सी रखी हुई है मिक्सी में एक जार लगा हुआ है कुछ पिसा हुआ नजर आ रहा है।

घर है घर दो मंजिल के बने हुए हैं उसपे सौर ऊर्जा लगा दिखाई दे रहा है एक खंबा लगा हुआ है जो कि--

जम पे बच्चा बैठा घूम रहा है रिमोट वाली कार पे वह उसी को देख रहे है तीन लोग।

टाइप से बना हुआ है लालटेन रखी हुई है बहोत पुराने पुराने ताग बने हुए हैं पुराने मॉडल का किचन दिखाई दे रहा--

पीली दवाई के साथ है इसमे सारी दवाई रखी हुई जो कि ये देखो सामने रखी हुई है शीशा के मतलब हुआ इसमे सारी शीशिया लगी हुई है।

एक पेड़ में लगाने वाली दवाई है सामने बगल में बने हुए हैं आगे पीछे दिखाई दे एक लोग गद्दा लेते हुए नजर आ--

इसमें और इस्स में बच्चे सब प्रोग्राम करते हुए हूं य--

ये नर्सरी है नर्सरी मे बहोत सारे पौधे लगे हुए है नर्सरी मे बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ मे गमले रखे हुए है जो हर कलर के गमले है।

ये एक पार्क है पार्क से एक रोड निकली हुई नज़र आ रही है यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है।

यहाँ पे वो जे भी मूर्ति बनी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहोत बड़े बड़े है।

यह जंगल है जंगल में बहोत सारी बकरियाँ है बकरियाँ पली हुईं मगर यह एक साथ खाना खाती हुई नजर आ रही है।

झुण्ड झुण्ड खा रही है जंगल में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है बहोत लम्बे लम्बे सीधे सीधे पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह रूम है रूम में चाकू वाकू सब लगे हुए है ये एक कुछ न कुछ मालतें वूलते बनी हुई है।

गेट के सामने एक खम्बा है दो बाहर खम्बा भी लगा हुआ है जोकि लोहे का खम्बा है गेट काफी सुंदर लगा हुआ है लोहे का गेट है।

यह एक अ झांकी है झांकी मंदिर के सामने खड़ी हुई है।

उसको पकढ़ के फोटो खिचवा रहे है एक आमदी कुर्ता और पेंट कुर्ता और पजामा मे खड़ा हुआ है जो की ब्लैक कलर का कुर्ता वाइट कलर का पजामा पहने हुए है।

एक दो आदमी पकड़े हुए हैं। एक गमछा और बनियान पहने हुए हैं और दोनों धागे को पकड़ के फोटो खिंचवा--

ये कुछ लोहे की मशीने रखी हुई है इनमे बहुत सारा काम होता है इन मशीनो से काम होता है एंड मशीनो मे लोग काम करने के लिए आते है और यहाँ से--

ये एक शॉप है जो कि बहुत बड़ी है और रूम कि तरह बनी हुई दिखाई दे रही है इसमे बहुत सारा सामान लगा हुआ है नीचे से सीडिया बनी हुई है।

ये लम्बी लम्बी सीढिया देखने दिखाई दे रही है जो की लोहे की दिखाई दे रही है ऊपर लाइटे लगी है।

इसमें फल चढ़ा हुआ है केला अंगूर सेब और ऊपर तम्बू लगा हुआ है।

इतनी सारी खिड़किया भरी हुई है ऊपर दूसरी कॉलेज में गयी के रशुनदान दिखाई दे रहे है।